यहां पर मस्जिद है मस्जिद में ग्रीन कलर की लाइटें लगी हुई है गुंबद है गुंबद में भी व्हाइट कलर की लाइटिंग लगी है।

यहाँ पर गार्डन है| गार्डन में कुछ लाइटें लगी हुई है कलरफुल लाइटों से सजा हुआ है| पीछे कुछ घर दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर एक गार्डन है जो सजा हुआ है नीचे बहोत सारी चेयर है चेयर पे बच्चे बैठे हुए हैं।

यहाँ पर एक गाँव हैगाँव में स्कूल हैजहाँ बच्चे नीचे बैठे हुए है।